एक का एक नदी जहाँ पे दो नाव हैं और साथ में कुछ कुछ पर्यटक जो हैं वो आकाश में उड़ रहे पंछियों को दान डाल रहे हैं।

चाय या कॉफ़ी की- कॉफी की एक दुकान जहां पे तीन बोतल सेनेटाइज़र रखा हुआ है कोविड के समय कोविड --

पका हुआ नहीं है अमरुद में विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है।

एक सैलून की एक सैलून का दु एक सैलून का दुकान जिसका नाम बाल दाढ़ी बाल दाढ़ी है।

एक महिला आगंतुक के इंतजार में खड़ी कुछ भीड़ या फिर खड़े कुछ लोग जो कि उनके आने का इंतजार आने का इंतजार कर रहे हैं।